इसमें एक पुराना सा भवन दिखाई दे रहा है। यह थोड़ा खंडर सा दिखाई दे रहा है।

में एक पुरानी सी इमारत दिखाई दे रही है। ईमारत के आस-पास --

इस पर बिल्डिंग पर तिरुपति टावर लिखा हुआ है। एस.बी.आई लाइफ इन्स्योरंस का एक बोर्ड लगा हुआ है।

इसमें एक बिल्डिंग दिखाइ दे रही है जो कि सफ़ेद कलर से पुती हुई है। बिल्डिंग में बहार की तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है।

बड़ी से थाली रखी हुई दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारी --

हरे लाल कलर की हैं। इसके साथ म्म स्ट्रॉबेरी की पत्ती भी हैं।

दिखाई दे रहा है तालाब के पुल के बीच में बने पुल के खंबों की परछांई तालाब में दिख रही है।

फर सीमेंट का फर्श हो रहा है। कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। सीमेन्ट और रेत को --

इसमें एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिस पर एक बोर्ड लगा है इस पर जमुना पैलेस उत्सव ग्रह लिखा हुआ है।

यीशु मसीह की एक तस्वीर लगी हुई दिखाई दे रही है। तस्वीर के सामने कुछ फूलदान रखे हुए --

और एक सफेद टेबल रखा है। इसपे सफेद कलर का पर्दा डला है। उसके सामने दो औरते खड़ी हैं।

और सी.यू.बी.भी. ए.टी.एम. लिखा हुआ है।

इसमें एक मुख्य द्वार दिखाई दे रहा है जो कि लाल पीले कलर से पूता हुआ है। इस मुख्य द्वार पर शक्ति पीठ --

आ यीप्पी नूडल्स के पैकेट रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। सेवलोन की बॉटल रखी हैं।

इसमें कुछ घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। घर दो नो साइड घर बने हुए हैं। एक --

टीशर्ट कपड़े रखे हुए दिख रहे हैं बहुत सारे।

इसमें एक बरामदा दिखाई दे रहा है। बिल्डिंग का बरामदा है। जिसमें कुछ लड़कियां बैठी हुई हैं जों कुछ अपने --

फर्श पर चटाई बिछी हुई दिख रही है। जिम की बहुत सारी मशीने रखी है। एक आदमी हाथ में मोबाइल --

इसमें एक मंदिर दिखाई दे रहा है। मंदिर पर नारंगी कलर पुता हुआ है। कहीं नीला कलर भी पुता है कहीं-कहीं --

दिख रहा है तालाब के बीच में एक पुल बना हुआ दिखाई दे रहा है।

अँ के सामने और उन गुब्बारों का बना हुआ मुख्य द्वार --

एक ऑटो खड़ा हुआ दिख रहा है और कुछ बाइक --

दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग मास्क लगाए हैं।